इस इमेज में यहां पर एक चिड़िया का दिखाई दे रहा है जहां पर पत्थर के ऊपर कुछ बत्तख बैठे नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहाँ पर एक बस स्टैंड दिखाई दे रहा है जहाँ पर कुछ बस खड़ी नजर आ रही हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर देखिएगा कुछ इमारत दिखाई दे रही है और यहां पर देखिएगा आसपास कुछ शो प्लांट्स भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में सामने देखिएगा यहां पर एक बंगला दिखाई दे रहा है जहां पर देखिएगा गेट के पास लाइट जलती नजर आ रही है।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

इस इमेज में देखिएगा सामने एक सड़क दिखाई दे रही है जहां पर एक लड़का पैदल चल रहा है और पोस्टर भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में सामने देखिएगा यहां पर एक पार्क दिखाई दे रहा है जहां पर नीचे कुछ फूलों के पौधे नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक सामुदायिक केंद्र सेक्टर टेन दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ पेड़ भी नजर आ रहें हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर देखिएगा कुछ अह दुकानें दिखाई दे रही है और यहां पर कुछ व्यक्ति भी खरीदारी करते दिख रहे हैं।

इस इमेज मे देखियेगा सामने यहां पर एक गेराज दिखाई दे रहा है यहां पर एक मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग चलती नजर आ रही है।

इस इमेज देखिएगा यहां पर एक अंअं सड़क के पास में कार चल रही है और ऊपर बड़ा सा बोर्ड भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक सामने से छोटा सा प्यारा सा हिरण दिखाई दे रहा है जिसके दो बड़े कान नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है और रोड पर एक मोटरसाइकिल चलती नजर आ रही है।

इस इमेज मे देखियेगा यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ लोग योगा करते हुए नज़र आ रहे है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक बड़ा सा पूल दिखाई दे रहा है और नीचे एक नदी भी नजर आ रही है।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

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक लकड़ी की माची बनाई दिख रही है और यहां पर कुछ सूखे पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज देखिएगा यहां पर मेट्रो स्टेशन दिखाई दे रहा है और सीढ़ी पर दो तीन लोग जाते नजर आ रहे हैं।

इस इमेज मे देखियेगा सामने यहां पर एक शादी का स्टेज दिखाई दे रहा है और यहां पर बहोत सारे लोग नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक स्टेज दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ लोग म्यूजिक बजाते नजर आ रहे हैं।